ये चित्र एक ग्रोसरी शॉप का है जहां पे--

इस पॉलीथीन में क्रेब्स रखे हुए हैं।

और लोग इन चीजों को लेने के लिए आते हैं यहां ही बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई है।